इस पिक्चर में कई लोग दिख रहे हैं।

कुछ लड़कियां हैं और पंडित भी दिख रहे हैं।

ये कोई धार्मिक जगह दिखाई दे रही है इसके आसपास पेड़ लगे दिख रहे हैं।

कुछ औरतें हैं जो कि नदी मे है दिखाई दे रही है।

ये बुक की दुकान दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है विजय पुस्तक भंडार ।

कई तरह के कपड़े दिखाई दे रहे हैं ।

इस पिक्चर में एक पोस्ट ऑफिस दिखाई दे रहा है।

जिसके अंदर एक आदमी जाता हुआ दिख रहा है।

विंडो भी दिख रही है जो कि मिरर है।

यह एक आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है।

इसके साइड में रिने भी दिख रहे हैं।

जिसमें स्लाईड लगी है और नीचे पानी दिख रहा है इसमे एक फेमिली एंजॉय कर रही है।

यहाँ पर हिंदू रिलीजन की कई चीजें दिख रही हैं।

और बहुत सी गाड़ियां भी खड़ी है।

और जो बलुन्स और परदों से --

जैसे कि दो मिनट्स मेगी बॉस --

बीच मे नदी उसके आस-पास घास दिख रही है कई गाड़ियां खड़ी है।

जिसमें कई तरह के बोर्ड्स लगे हुए हैं।

कुछ लोग खड़े होकर ऑर्डर दे रहे हैं।

इस पिक्चर में ये एक पुरानी मंजिल बनी दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग्स के सामने पेड़ भी लगे है।

ये कोई लेक नजर आ रहा है।

इस पिक्चर में एक मीटिंग रूम नजर आ रहा है।

इंस्पेक्टर में ही है कोई पार्टी की जगह दिख रही है।

इनके हेलमेट और मास्क लगे हुए हैं।

इस पिक्चर में एक रोड नजर आ रहा है।

ये कोई रिलिजियस प्लेस नजर आ रही है।

ईस रुम मे एक विंडो भी बनी है।

के आसपास हरियाली दिख रही है।